के चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

वाल में एक पेपर भी चिपकाया--

इस फील्ड में मुझे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

साड़ी भी पहना हुआ है और चूड़ियां भी।

यह जलाने वाला भी है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोटस का लीव्स दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दे रहा है।

ऊपर में दो चोको पाई का पैकेट भी है।

घने घने पेड़ पौधे भी है और घना घना जंगल भी।

ऊपर में आर्ट और म्यूजिक भी लिखा हुआ है।

एक बच्चे ने घुंघरू भी पहना हुआ है।

हाथों में बेलचा भी है।

यह लोग ड्रेन भी खोज रहे है।

तस्वीर में मुझे बड़ा सा सड़क दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे में बड़ा सा गेट भी है जिसमे ताला लगाया हुआ है।

उन्होंने पर्पल कलर का शर्ट चश्मा और एक माला पहना हुआ है।

औरतों के हाथ में चूड़ियां भी हैं।

साइड में नो पार्किंग का साइन बोर्ड भी लगाया हुआ--